यहां पर बहुत सारे युवक दिखाई दे रहे हैं एवं यहां पर बहुत सारे--

यहां पर हॉस्पिटल के जमीन में टाइल्स का प्रयोग किया गया है और यहां पर एक घड़ी भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर पास में बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे--

एवं दुकान के बाहर में एक पोस्टर दिखाई दे रहा है जिस फ्रेश एंड फाइन सुपर पर लिखा हुआ है।

यह एक होटल का दृश्य है।

यहां पर प्लेट को लोहे की मदद से बनाया गया है जिनमें डिजाइने भी की गई है।

जहां पर मस्जिद का कलर व्हाइट दिखाई दे रहा है एवं यहां पर ऊपर में बहुत सारे चोगा भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बिल्डिंग में बहुत सारी खिड़कियां दिखाई दे रही है।

यहां पर होटल में बहुत सारे लाइट लगाए हुए हैं।

एवं यहां पर बहुत सारे बड़े बड़े घर भी दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पर दो बाल्टीया भी दिखाई दे रही है जो की रस्सी के मदद से लटकाए गए --

यहां पर कई सारे पोस्टरों का फेस ब्लर किया गया है।

यह एक पार्क का दृश्य है।

एवं यहां पर तीन खिड़कियां भी दिखाई दे रही हैं जो की कांच की मदद से बनाए हुए हैं।

एवं यहां पर एक बाइक भी दिखाई दे रहा है।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

यहां पर बहुत सारे दुकान ही करकट की मदद से--

यहाँ पर कार का कलर ग्रे है एवं यहां पर एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

एवं यहां पर बहुत सारे टेबल भी दिखाई दे रहे है।

इसके बाहर में एक पोस्टर लगाया हुआ है जिस पर निर्मला कॉलेज डोरंडा रांची लिखा हुआ है।

एवं टोपी के ऊपर बाय लिखा हुआ है।

यह एक रूम का दृश्य है।

जहां पर बिल्डिंग को रेलिंग के मदद से घेरा गया है।

रेलिंग को लोहे की मदद से बनाया गया है।

यहां पर स्कूल में बहुत सारे बेंच लगाए गए हैं जो की लोहे की मदद से बनाए हुए हैं।

यहां पर बेंच के ऊपर में बहुत सारे सामान दिख रहे हैं।

यह एक दरगाह का दृश्य है।